एक व्यक्ति सफ़ेद रंग की सीढ़ियों पर खड़ा है जिसके साथ ही में एक व्यक्ति और नीले रंग की वस्त्र--

एक लाल रंग की इमारत साफ़ देखी जा सकती है जिसके साथ ही में नीचे की--

तरफ कुछ मोटर साइकल्स भी खड़ी है तथा नीचे के साथ ही में पीछे की तरफ --

ता है तथा लोहे का शटर भी नज़र रहा है नीचे का फर्श भी साफ़ देखा जा--

नीरज ऑटो मोटिव एक सफ़ेद रंग की दीवार पर लिखा हु --

एक पीले तथा काले रंग की दीवार साफ़ देखी जा सकती है जिसके नीचे काले तथा सफ़ेद रंग की लोहे की ग्रीस --

आसपास काफी ज्यादा वृक्ष नज़र आ रही है पीछे की तरफ आसमान भी देखा--

लाल रंग के अक्षरों से जे_एम_आर _ पेट्रोलियम एच_पी सुकमा लिखा लिखा हुआ है तथा नीचे की तरफ--